चॉकलेटी कलर का फर्नीचर रखा हुआ है।

एक व्हाइट कलर की चेयर रखी हुई है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने चॉकलेटी कलर की शोट पहन रखी है वहां पर एक और आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लू और वाइट कलर की --

यहां पर एक लेडी खड़ी हुई है जो कि पिंक कलर का कुर्ता पहनी हुई है यहां पर कुछ बोरियां रखी हुई हैं।